और एक उम् मां है अपनी बच्ची के साथ बैठी है और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और मुझे पिलर भी दिखाई दे रहे।

और यहां पे मुझे एक या दो तीन मजदूर लगरे हुए है और एक दो बाल्टी दिख रही है।

और यहां पर है आधा भवन निर्माण हो चुका है और यहां पे बहोत सारे अच्छे अच्छे मजदूर लगे हुए है।

यहां पर मुझे बहोत सारी आलमारी दिखाई दे रही है और आगे भी पीछे बहोत सारी आलमारीयां दिखाई दे रही है।

और यहां पर मुझे एक ऐसा चित्र दिखाई दिया है जहां पर लंबा गेट है और बहुत ही सुंदर दृश्य है।

यहां पर मुझे सुजुकी की इस चित्र में मुझे सुजुकी बाइक की मोटरसाइकिलों की चीज दिखाई दे रही है।

बहोत ही शानदार कीबोर्ड रखा हुआ है पता नहीं कैसे कैसे लोग यहां पर कीबोर्ड बनवाते हैं।

यहां पर मुझे ईंटें भी दिखाई दे रही है और नीचे कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक गाड़ी की वॉशिंग होते हुए दिखाई दे रही है और एक आदमी बहुत मोटा है और उसमें एक दुकान भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक दुकान में बच्चों के छोटे छोटे कपड़े मिलते हैं और लकड़ी के भी कपड़े बने हुए हैं यहां।

और उस आदमी के पीछे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और हरी भरी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

और अल्टो गाड़ी भी नजर आ रही है और नीचे की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रहा है।

ये बहुत सारे आदमी है विश्राम कर रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई देखने को मिल रही है।

यहां पर मुझे एक गाड़ी बोलेरो दिखाई दे रही है और एक स्विफ्ट दिखाई दे रही है और अंदर एक बाइक दिखाई दे रही है।

और दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी फोन पर बात कर रहा है।

यह घर बहुत ही शानदार है ऐसा घर मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा।

मुझे यहां पे पचना ही नहीं पड़ता है ऊपर प्रिंटर भी दिख रहा है इयरफोन भी नज़र आ रहे है।

यहां पे मुझे कुछ बच्चों की खेलने की खिलौने दिखाई दे रहे हैं और नीचे कारपेट भी बिछाया हुआ है।

बहोत ही शानदार तरीके से चीजे नजर--

और मुझे एक लड़की है वो योगा करती हुई बहोत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है और यहां पर लाइटें भी जल रही है।